और बाहर ना मतलब दो लड़के दिखाई दे रहे है एक ने पीले रंग की टी शर्ट पेहनी है दूसरे ने ब्लैक रंग की--

सामने बिल्डिंग नजर आ रही है।

घास है पेड़ पौधे हैं बिजली के तार दिन का समय है।

पीछे एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने बैग टांगा हुआ है।

और अंदर का रूम है बस ये--

स्लाइडिंग वाले बच्चो वाले झूले हैं बाहर की तरफ ना कुछ ग घर नजर आ रहे हैं कुछ दुकान है और गाड़ियां भी हैं।

इस फोटो में सामने लिखा है महर्षि दयानंद स्टेडियम ऊपर तिरंगा लगा है।

सामने लिखा है ग्रीन आयुर्वैदिक क्लिनिक नीचे मोबाइल नंबर लिखा है सेवेन थ्री फाईव --

और पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है दिन का समय दिखाई दे रहा है हमे।

अंदर ना काफी सारी साइकल्स दिखाई दे रही है दीवाल पे भी साइकल का पोस्टर है।

और सफेद रंग की दीवार है ठीक है।

और वाइट कलर का दीवार है ऊपर भी सफेद सफेद रंग का है।

क्रिसमस ट्री के स्टिकर लगे हुए हैं ब्लैक कलर की अ एक कार दिख रही है यहां पर--

डम्मी खड़ी है जिसने व्हाइट कलर का टॉप पहेनाया हुआ हैं जिसको--

साइड में एक लेडी और खड़ी है जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है हाथ में घड़ी पहनी है।

पैकेट्स है आटा ब्रेड के पैकेट है डबल रोटी है।

दिन का समय है ठीक है और काले रंग का बाहर से दिखाई दे रहा है जो दरवाजा वो भी काला है।

सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑन सेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पौधे दिखाई दे रहे हैं और यहां पर--

एक लड़की भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है पानी की बोतल दिख रही है पेड़ पौधे दिख रहे हैं फर्श पर भी पत्थर डला हुआ दिखाई दे रहा है।

चार तो लड़के हैं बच्चे हैं और एक लड़की हैं।